जी हां दिख रहीं हैं बहुत सारी बहुत सारी लेडीस हैं यहाँ पर बहुत पोस्टर लगा हुआ हैं कुछ कर रहे हैं।

जगह पड़ी हुई है वहां पर एक दो कमरा दिख रहे हैं। दो तीन वहाँ पे म उसमें खिड़कियां दिख रहे है तीन- चार पेड़े हैं। वहां पर एक बाइक खड़ी हुई है। थोड़ा-थोड़ा बादल दिख रहा।

बहुत बड़ा महल दिख रहा है वो हरे कलर में पुता हुआ है उसके आगे पोस्टर लगा हुआ है।

बादल भी दिख रहा है बहुत बड़ा उसमें से पानी निकल रहा है। वहाँ पे पेड़ भी हैं। एक जेंट्स एक लेडिस खड़ी हुई हैं। और कुछ हरी हरी चीजे भी दिख रही हैं यहाँ पे बादल भी दिख रहा---

और पेड़ दिख रहे हैं वहीं पे और भी चीज --

लेडिज खड़ी हुई वहां पे एक जेंट्स खड़ा हुआ है। जेंट्स ने नीले कलर का कुर्ता पहना हुआ है।

एक बस जा रही है गुलाबी कलर की है वहाँ पर जेंट्स लेडिस जा रहे हैं उसमें बादल दिख रहा है नीचे जगह दिख रही है पेड़ दिख रहें हैं बाजू में एक और बस और खड़ी हुई है।